यह एक मंदिर की पिक्चर है। इसमें जिसमें मंदिर में दो आड्छे हैं।

ये फोटो मेरे खयाल से चर्च या शादी की है एक इसमें लड़की खड़ी है।

यहां एक पपीते का पेड़ एक जोड़ा हैं मंदिर है ।

बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं मास्क चौपाई के साइड में मैसी ट्रैक्टर खड़ा है।

और यहां पे बहुत सारी गंदे के फूल है।

दोनों साइड में दो बुके के या यहां पे गमले से रखे हुए हैं बड़े बड़े।

और एक इधर पेड़ है ग्रीन कलर का और यहां पे खंभा गढ़ा हुआ है एक।

ग्रीन कलर की चुन्नी से सजावट कि गई है एक साइड में पेड़ और अंदर व्हाइट कलर की कुर्सी है और आदमी है व्हाइट कलर की शर्ट में और ब्लैक कलर की शर्ट में।

और फोन रखा हुआ है और यहां पे साइड में बैग टंगा रहा है बैग रखा हुआ है बे बैग --

और व्हाइट कलर यह की मूर्ति है।

साइड में एक चश्मा पकड़े हुए एक आदमी भी फोटो चम फोटो चिपका हुआ है एक मैडम है यहां पे--

और पीछे लाल कलर का टेंट लगा हुआ है ऊपर भी टेंट लगा हुआ है रेड कलर का।

और यहां प ये हरे कलर का कोई मस्जिद वगैरा है।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

यह एक अ सीमेंट की दुकान है जी इसका नाम चैंपियन चैंपियन सीमेंट है।

नीचे सफेद कलर का फर्श है और यहां पे एक--

यहां पे एक लड़का है जिसने भी संत्री कलर की वो पहन रखी है ब्ल्यू कलर का लोवर पहन रखा।